यहाँ शादी हो रहे है शो यहाँ डी. जे बज रहे है।

जो काफी नामी डी. जे है काफी अच्छे डी. जे है जिन्हैं लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते है अपने शादी विआह में लाने के लिए --

और काफी अच्छी बनावटी की गई है इस मंदिर का जो देखने में काफी सुंदर है ।.